एक स्टेचू बना हुआ है जिस पर किसी व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई है।

लाइट भी जल रही है दीवार पर बड़ी सी सुंदर डिजाइन बनी हुई है।

पार्क की है इसमें बहुत से सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं।

इस इमेज में बहुत सारे स्टील के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

नमकीन कुरकुरे और भी खाने पीने के समान दिखाई दे रहे है।

इसमें कुछ कारें भी दिखाई दे रही है।

इसके किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं।

कार भी दिखाई दे रही है एक स्कूटी भी--